इस फोटो में मुझे एक स्कूल बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है।

बैलेंस दिखाई दे रहे है साइड की तरफ कुछ बोटले रखी हुई है। एंड ऊपर कुछ जाल सा लगा हुआ--

इस फ़ोटो में मुझे एक झील या तालाब दिख रहा है इसमें --

आगे की तरफ येल्लो कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे है।

और इस बहोत सारे आसपास पेड़ पौधे भी लगे हुए है इसमे मुझे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

शॉप की दूकान लग रही है केप बोहोत साड़ी जरूरतों का सामान रखा हुआ है।

एंड बहुत सी कलर की इसमे मुझे जग मग या कटोरी जो भी हो वो दिखाई दे रही हैं ।

इस फ़ोटोज़ मे मुझे नल के फिटिंग --

दिवार पर लगी हे इसके निचे --

एंड स्टेटिंग में टोटे लगे हुए है और नीचे बोहोत सारे मुझे गंदगी भी दखाई दे रही है।